यहां पे बहुत सारे बिल्डिंग हैं जहां पे कपड़े सुखाए जा रहे है और ये इस बिल्डिंग में तीन लड़के खड़े है और इसके नीचे बहुत सारे बाइक हैं और बाइक पे भी कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबल लगे हुए है और चेयर्स भी है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी बैठे हुए है और ऊपर में बहुत सारी लाइट्स भी लगी हुई है।